का पिक्चर ले के पोस्टर पे लगाया गया हैं यहां कुछ खिड़कियां भी हैं।

यह स्कूल लग रहा है यहां पे बहोत सारे बाइक भी लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे पंखे और लाइट्स हैं।

यहां सड़क है सड़क से कुछ लोग आ जा कर रहे हैं।

यह रास्ता काफी दूर तक ले जाता है।

यह बहोत ही अच्छा लग रहा है देख--

ये ज्वेलरी शॉप लग रहा है यहां पे चूरी हार कंगन और भी बहुत सारे चीज बिक रहे हैं।

यह काफी ध्यान से सोच रहे हैं।

के रास्ते जा रहा है यहां एक फोटो में हार लगी हुई है।

एक लड़की खाने को बहोत ध्यान से तैयार कर रही है और इसको चेक कर रही है।

इसके सामने एक खिड़की है जो बाहर की ओर दिखाई दे रहा है यहां अंधेरा है।